यहां पे बादल दिख रहे हैं नीले और स--

होटल विजय तारा लिखा हुआ जो बोर्ड है वो ब्राउन कलर --

जिसमें सामने में पुरुष एवं महिलाएं लिखे हुए है और ये एक शौचालय का दिख रहा है।

इसमें समय ऊपर में कुछ क्रॉस वाले टाइल्स लगे हैं और ये पुल बना हुआ है नीचे ढेर सारे ट्रेन खड़े हुए हैं मालगाड़ी ये सब।

कच्चे मकान नहीं मतलब कंस्ट्रक्ट आधा कंस्ट्रक्टेड हुए मकान दिख रहा है सामने और बिना प्लास्टर से कई सारे मकान है।

और ढेर सारे पेन रखे हुए हैं सामने में दो लाल रंग की चेयर रखे हुए हैं।

प्लेट व्हाइट कलर के हैं।